जो की काफी खूबसूरत और सुंदर है।

यह एक छोटा सा मन्दिर है।

कृष्णा जी का मूर्ति दिखाई गई है।

यह एक मस्जिद है।

बैंक के पास खड़े है।